यहा दो आदमी खड़े है दोन्हों ने हरे रंग का सूट पहना हुआ है दोन्हों के सर पे उजाले कलर का टोपी है एक आदमी के हात मे लोहे का स्टैंड रखा हुआ--

यहाँ एक आदमी फिश बेच रहा है। जिसने लाल कलर की पन्नी पे एकदम छोटे छोटे फिश रखे हुए है। उसके सामने एक पीले कलर का डब्बा है।

थाली रखे हुए है यहाँ पे दो तीन लोग बैठे हुए एक आदमी कम्बल ओढ़ के बैठा हुआ लैपटॉप मे कुछ देख रहा है सभी आदमी लैपटॉप मे देख रहे।

यहाँ पे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है। सामने कुछ दो छोटी बच्चिया दिखाई दे रही है। दोन्हों के हाथ मे एक जलता हुआ कॅण्डल दिखाई दे रहा है। पीछे तीन चार लोग खड़े है। जिन्होने--

और भी बहुत सारे फूल और फूल दस्ते लगे हुए है एक दो आदमी बैठे हुए है आसपास जो है बल्ब लगे हुए है ऊपर काले बादल दिखाई दे रहे है।

ये एक पंडाल का दृश है जीसके ऊपर बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है आसपास बहुत सारे पर्दे से बनाया गया सामने दो तीन--

महिलाए दिखाई दे रही है एक ने पीले कलर की साड़ी पहनी है और दूसरे ने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी लोग एक दूसरे से टक्कर खा रहे है।